पेट्रोल पंप का ओर पोर ते जगह भी छ दिखेण लगीं जैका पैथर हम ते कुछ झाड़ी --

नदी का एंच एक बड़ु पुल छ बणयु जै पर लोहा का एंगल छ लग्यां और तार छा लग्यां‌।

यह चित्र मा हम ते एक पेट्रोल पंप छ दिखेण लग्युं जै का एंच इंडियन ऑयल छ लिख्युं भ्वां फणि हम ते पेट्रोल पंप की मशीन भी दिखेण लगीं‌।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ु पेट्रोल पंप जै का भीतर हम तैं बहुत सारी मशीन छ दिखेण लगीं ये फणा हम तैं कुछ लोग भी छन दिखेण लग्यां और कुछ गाड़ी भी छन दिखेण लगीं ओर पोर हम तैं कुछ बोर्ड भी छन दिखेण लग्यां।